बहोत प्यारा-सा गार्डन है गार्डन के सामने ही एक प्यारा-सा मकान है।

अ मेला दिखता हुआ मालूम होता है काफी बड़े एरिये में मेला लगा हुआ है सामने खुला हुआ एक पार्क है बहोत बड़ा मैदान है हरा भरा।

ये-ये-ये- यह सड़क पर दो बाइक खड़ी हुई हैं एक का कलर नीला है और एक का कलर पर्पल है। सामने हरियाली है पहाड़ हैं पेड़ पौधे हैं यह नजारा अच्छा लग रहा है।

पेड़ है और सामने डस्टबिन रक्खा हुआ है बेंचों पर कोई बैठा हुआ नही है रात का समय है।

एक बाग है और बाग़ में काफी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं।

लाल कलर की कड़ाई रखी हुई है चीज़ के डिब्बे रखे हैं जिसमें काफी सारा सामान भरा हुआ है दूकान में जो कि पूरी भर रही है।

ये मॉल मालुम होता है मॉल के अन्दर बच्चों के डीप कपड़ों का डिपार्टमेंट है अलग से जहाँ पर लड़कीयों के लडकों के छोटे छोटे बच्चों के कपड़े टंगे रहे हैं।